ये एक बहोत बड़े हॉल है जहां पे सभी वर्कर्स रुके हुए है और एक जो हेड इंजीनियर है वो सबको बता रहे है काम करने के लिए --

यहाँ पे सभी वर्कर्स ऑरेंज कलर के पहने हुए है और सब ने टोपी लगाए हुए हैजो पीले कलर का है।

ये एक वाटर पार्क --